दो आदमी भी दिखाए गए हैं।

बिल्डिंग दिखाई गई है बिल्डिंग के ऊपर--

रोड के किनारे हमें बहुत सारे गमले रखे हुए दिखाए गए हैं और बाइक खड़ी हुई है।

इस चित्र में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया गया है।

तीन आदमी दिखाये गये हैं।

बोहोत सारे लोग टहलने आए हुए हैं।